ये हमारे इलाका का एक रेलवे प्लेटफार्म है ये प्लेटफार्म बहुत ही पुराना है।

यहाँ पर इलाका का लोग हर वक़्त भीड़ जमाता है | यहाँ पर बीस कर्मचारी काम करता है | दफ्तर के बाहर हर वक्त लोगो बैठा रहता है |

साउंड सिस्टम डी.वी.डी. प्लेयर सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर चीजों को बहुत अच्छे से सजाकर रखा गया है।

आने जाने के लिए इस बस को रखा गया हैं यहाँ पर दस बसेस --

ये प्लेटफार्म बहुत ही साफ-सुथरा है यहाँ पर हर वकत लोगों की भीड़ जमी रहता है।

ये हमारे इलाका का एक सड़क है।

ये हमारे इलाका का एक मछली का मार्केट हैं | ये मछली मार्केट बहुत ही बड़ा है |

दस कार को सर्विस के लिए रखा जाता है यहाँ पर।

यहाँ पर बैठने के लिए ढेर सारा जगह भी है यहाँ पर ढेर सारे छोटे बड़े पेड़-पौधे हैं।

इलाका का लोग यहाँ से कपड़ा खरीदता हैं।

यहाँ पर दौड़ का कॉम्पीटिशन होता हे क्रिकेट फुटबॉल खेला होता हे।

पुराना मंदिर है इस मंदिर का --

यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से गेम को देख रहा है।

यहाँ पर दो सौ लोग काम करते हैं यहाँ पे ढेर सारी मशीनें हैं यहाँ पर मशीनों से सामाने बनाया जाता है।

जो इस चर्च का प्रोग्राम देख रहा है।

यहाँ पर ताजा-ताजा मछली मिल जाता है इलाका का लोग यहाँ से मछली खरीदता है।